इस दृश्य में एक मछली दुकान का चित्र है।

एक टीचर खड़ी हुई है।

यह टीचर साड़ी पहनी हुई है और मास्क लगाई है।

इसमें शुभ दीपावली कार्यक्रम लिखा हुआ है।

उसके ऐड साइड बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

इस दृश्य में एक मैदान का चित्र है।

इस बागान में चेयर और टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बुक दुकान का चित्र है।

और एक हाफिज साहब भी बैठा हुआ नजर आ रहा है जो कुर्ता पजामा और टोपी पहना हुआ है।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

एक गमला में फूल लगा हुआ है।

ज्यादातर कपड़ा लेडिस लोग का है।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

चेयर का कलर काला है।

सभी आदमी लोग जैकेट पहने हुए हैं।

इस दृश्य में एक दुकान का चित्र है।

बगल में भी एक ट्रे रखा हुआ है।

फूल गोभी के सब सब में बहुत सारा घास भी निकला हुआ है।

और लाइट भी जल रहे हैं।

इस दृश्य में एक कॉरिडोर का चित्र है।